ये एक गांव के बाहर का पिक्चर है जहां एक बड़ी सी गाड़ी सामने रोड से आ रही है और कच्चे घर बने हुए हैं।

और वहां पर एक वाटर कूलर भी रखा हुआ है काउन्टर पर अ लाइट दिया जल रही है और यहां पर अंदर सामान भरा हुआ --